मुझे इस पिक्चर में बहोत सारी रेत दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में एक बच्चा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में हार दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में पौधे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में आसमान दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में रोड दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में रोड दिखाई--

मुझे इस पिक्चर मे स्कूटियां दिखाई दे रही है।

झे इस पिक्चर में तालाब दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में आसमान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में लोग दिखाई दे रहे हैं।

पिक्चर में शॉप दिखाई दे रही--

मुझे इस पिक्चर में गमला दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में टी_वी दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में वॉल दिखाई--